लंबा बड़ा रोड है जिसके साइड में जमीन जो है घास से भरी हुई है नारियल का गाज भी है और खजूर का गाज भी है |

बहुत बड़ा पहाड़ है कलर सिमेन्ट और पिंक कलर है वहा पे एक आदमी बैठा हुवा है जो ब्लू कलर का शर्ट पहना है वहा से नीचे मे बहुत सारी गच्छ--

और घर भी दिख रहे है घर की छत व्हाइट है और गच्छ कुछ ग्रीन पत्ते वाले है कुछ काले पत्ते वाले दूर मे एक ब्लू कलर दिख रहा हैं।